और व्हाइट कलर का वो गमला--

और एक ग्रे कलर में हैं सीमेंट की बोरियां--

यहां पे जो है बिल्डिंग्स बनी हुई है और बिल्डिंग के बीचो--

बोर्ड लगा हुआ है और उसके साथ ही ब्लैक कलर का एक गेट लगा हुआ है और वाइट कलर का घर है पूरा का पूरा और उस गेट के--

यहां पे एक शॉप है बहुत बड़ी शॉप है जिसका नाम है कैप्शंस के नाम से ऊपर जो उन्होंने लिखा हुआ है।

एक डस्टबिन रखा हुआ शूज रखे हुए कप रखा हुआ वहां पे और टेबल के ऊपर एक कप --

और ऑफिस के नीचे जो है बहोत सारे--

और रूम के वहां पे पर्दे लगे हुए हैं तो आधे पर्दे वो खुले हुए हैं और उधर एक दो चेयरें रखी हुई हैं उधर एक टेबल रखा हुआ है।

पैरों में जो है वो एकदम खाली है।